इस दृश्य में एक घर है घर के बाहर में एक दरवाजा है जिसमें कुंडी लगा है और ताला लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक रूम है रूम के अंदर एक महिला है और तीन बच्चियां हैं।

यहां पे एक फोन पे के क्यूं_आर कोड रखा हुआ है।

एक टीशर्ट पहनी हुई है लाल रंग का और बाकी तीनों पीले रंग के पहनी हुई है।

पीछे भी बहुत सारे जाली हैं और पोल हैं और पोल के ऊपर बहुत सारे तार लगे हुए हैं ।

उसके गले में गमछा है एक आदमी के हाथ में स्त्री है।

पीछे में एक टी_वी है ऊपर में स्प्रे बोतल रखे हुए हैं जो लाल रंग का है।

यहा बहोत सारे प्लास्टिक है प्लास्टिक के अंदर कुछ पाइप रखे हुए है।

एक बॉक्स है जो ब्राउन कलर के है यहां लाइट की रोशनी आ रही है।

यहाँ पे एक पोल है जिसके ऊपर एक स्विच बोर्ड लगा है जिसमें बहोत सारे काले रंग के तार लगे हुए हैं।

टोकरी के ऊपर दौरी रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे काले रंग के अंगूर है अंगूर में कुछ दंतियां हैं।

एक शटर है जिसके अंदर ताला लगा हुआ है धूप की रोशनी आ रही है।

एक हल्का रैक है रैक के ऊपर कुछ छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पे काले रंग का दो गाड़ी है और एक छोटा सा घर है जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है।

एक टेबुल है यहां पे एक फोन पे का क्यूआर कोड रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक कोचिंग सेंटर है जिसमें एक आदमी के हाथ में फोन है।

एक पहाड़ है पहाड़ के ऊपर भी बहोत सारे पेड़ है।

एक झंडा है जिसमें ऑरेंज वाइट और ग्रीन पेंट किए हुए हैं।

पीछे में बहो एक छपरा है और जिसके नीचे लोहे के दंडे लगे हुए हैं।

पीछे पहाड़ है एक बड़ा सा है।

यहां पे एक छाता टंगा हुआ है जो काले रंग का है।

शटर के बगल में लोहे का दानटा जो प्रिंट लगा है व बहोत सारे तार है रस्सी है।

आगे साइड तीन चार बॉल रखे हुए हैं।

धूप की रोशनी आ रही है आसमान पूरा साफ दिख रहा है।

यहां पे एक हेल्मेट रखा हुआ है जो काले रंग का है।

इस दृश्य में एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे रैक हैं।

बगल मे एक इनवर्टर है पीछे मे बहोत सारे तार और है।

एक पोस्टर है जिसपे मम्मी डैडी लिखा हुआ है।